यह चर्च काफी बड़ा है यहाँ पे काफी सारे क्रिश्चियन धर्म के लोग आते है और यहाँ पे क्रिश्चियन धर्मो की शादियाँ भी होती है यहाँ पे--

यह एक डेम है और यह डैम काफी बड़ा है यहाँ पे काफी सारे लोग आते है।

यह एक जिम हैऔर यह जिम काफी बड़ा है इस जिम में काफी सारे लोग आते है एक्सरसाइज करने के लिए।